फूलों का डेकोरेशन भी किया हुआ है।

ये स्कूल का सीन है और यहां पे एक आदमी अंदर जा रहे है और यहां पे एक और आदमी अपने--

और उसके ऊपर एक टी_वी भी नजर आ रहा है यहां पे--

ये गुफा का सीन है और यहां पे बहुत बड़ी गुफा भी दिख--

और यहां पे बहुत अच्छे से डेकोरेशन भी किया हुआ है।

कचोरी भी है पूरी भी है और भी बहोत कुछ है यहां पे--

ये शॉप का दुकान है और यहां पे--

ये शादी का सीन है और यहां पे स्टेज में अभी शादी--

हो रही है और डेकोरेशन बहुत अच्छा किया।

कार्टून में किया हुआ है और ऊपर से--